मिरकली लगी हुई है उसमें लाइट है।

रीलिंग दिखाई दे रही है इसमें --

मुझे दुकान दिखाई दे रही है उसपे जींस कपड़े हैं टेबल ढरी है उसपे जींस पेंट है।

कुर्सियां दिखाई दे रही है उसमे ब्रेंज है टेबल है कुछ दुकान है उस पे --

मुझे बस दिखाई दे रही है उस पे एक लड़का खड़ा है दो लड़के हैं और उस पे।